यहाँ पर एक हार फूलो की दुकान है जहा पर एक आदमी निचे बैठा हुआ है और उसके पास बहुत सारे लड़के खड़े हुए है।

और सामने एक पिंक कलर की शर्ट पहने हुए एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके ऊपर दो तीन पंखे लगे हुए है और सामने कुछ बच्चिया और कुछ महिलाएँ हुए नीचे बैठी हुई है।

सामने कुछ आदमी छत भर रहे है और कुछ पाल--

पास में ही तीन महिलाए खड़ी हुई है और एक बच्चे के हाथ में छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है।

और पीछे एक सेलीब्रैशन का बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।